फोटो में एक नदी के ऊपर नाव चल रही है नाव में दो नौके बैठे हुए हैं एक आदमी नौके को चला रहा है।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

ये एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके डेस्क के सामने दो कुर्सी रखी हुई है।

वहां पर एक सैमसंग का बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि हरे रंग का --

ये आगे में छोटे मोटे बहुत सारे ट्रके खड़ी है और इसके बीच में एक पीला रंग का डिवाइडर भी है।

इस तस्वीर में एक आदमी बहुत सारे फूल बेच रहा है जो कि गुच्छे गुच्छे में है।

का रंग पीला गुलाबी उजाला हरा नारंगी है।

और इसके नीचे बाहर जो बाउंड्री है वो पीले रंग की है।

यहां पर दो तीन चार झंडे भी लगे हुए है।

यह तस्वीर एक ऑफिस की लग रही है जो फायर एक्टिंग्विशर की है।

इसमें बोहोत सारे लाइफ जैकेट टंगा हुआ है इसमें चाभी भी है रस्सी भी है।

कमरा उजले रंग कहां है और बाहर रसोई घर लिखा हुआ है।

और इसके बाहर पीला रंग का पेंट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रसोइयों के नाम।

इसमें तीन चार आदमी के नाम भी लिखे हुए हैं और इसमें लिखे हुए हैं कि इनका कर्तव्य क्या है।

और इनके सामने एक ब बड़ी सी मेज पे कुछ सामान रखा हुआ है जो कि बच्चों को बांटने के लिए है।

वो जो उजले रंग की है और ऊपर लाल रंग का सरमन्गमर लगा हुआ है।

और इसमें बाहर एक बाउंड्री है जिसमें ईटा उठा है वहां बहुत देर का--

इसके जो नीचे वाली जो दीवार है वो पीले रंग की है और इसके बाहर गेट लगा हुआ है।

गेट के बगल में जो खंभे दो लगे हुए हैं उसमें दो लाइटें जल रही हैं।

उसके नीचे गुरु कृपा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का नीला रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पर बोहोत सारे चार पांच दुकानें भी हैं और एक सामने ऑटो है।

इस दुकान के सामने एक आदमी स्कूटर चला रहा है या दो स्कूटी स्टैंड पे अपना लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक नदी के घाट के पास की है।

इसमें सीढ़ी बनी हुई है और यहां पर सीढ़ी के ऊपर तीन चार लोग बैठे हुए हैं।

और जो घाट के बगल में जो सीरी का जो बाउंड्री है वो नारंगी रंग का है।

यह फोटो एक ज्वेलरी की दुकान की है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं।

ये दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट लगी हुई हैं और पंखा भी है और कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

बेसिंग के सामने पोटी करने वाला कामबोर्ड सब है।

और जिसमें तीन चार गुब्बारे भी टंगे हुए है जो दुकान की सजावट को दिखाता है।

ये फोटो में बहोत सारा कपड़ा इधर उधर रखा हुआ है।

और इसमें दो लाइट टंगे हुए हैं जो लालटेन के शेप में हैं।

ये बहुत सारी मछलियां यहां रखी हुई है जो की अलग अलग की भिन्न भिन्न प्रकार की हैं।